नदी के किनारे के पत्थर लाल और काले रंग के दिख रहे है इस नदी का --

व्यायाम उपकरण पर व्याका व्यायाम करते नज़र आ रहे है।

इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है --

तस्वीर में दिख रहे हैं स्टेशनरी शॉप --

नीचे बहुत सुंदर घास दिख रही है तस्वीर सुंदर है।